कुछ बोर्ड वगैरा लगे हुए। बहुत सारे लगे हुई। बल्ब वगैरा भी लगे हुए |

यहाँ पे नीचे ज़मीन दिखाई दे रही है और --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

यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पत्थर वगैरा भी पड़े हुए और कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे --

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर व्हाइट यहाँ पे एक गेट भी लगा हुआ और यहाँ --

यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी दीवाल व्हाइट है और यहाँ पे कुछ --

लोहे की जाली भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रा --

ट्रे रखी हुई है जिसमें बहुत सारी जलेबियाँ रखी हुई हैं इनका कलर येलो निचे रंगीन दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ --

टाइल्स बिछी हुई हैं इनका कलर वाइट है।

और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर की चद्दर या ली हुई है उसके ऊपर एक वयक्ति लेटा हुआ दिखाई दे रहा।

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दिवाल का --